यहाँ पर शो केस रखे हुए हैं जिसके अंदर फ्रूटी की बोटलें रखी हुई हैं जूस रखे हुए हैं ये एक मॉल की तरह दिखाई दे रहा है।

एक शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर गिलास का एक टेबल बना हुआ है ब्लैक कलर की चेर लगी हुई है।

बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग औरते खड़ी हुई दिख रही है | यहाँ पर फूल तोड़ने का काम किया जा रहा है ये गेंदे के फूल लगे हुए हैं ग्रीन कलर के पेड़ों में येलो कलर के फुल दिख रहें --

यहाँ पर कोई घूमने की जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर फुवारे चल रहे हैं पेड़ हैं बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ औंरते बैठी हुई हैं एक आदमी बैठा हुआ है जो वाइट शर्ट --

ब्लैक पेंट पहना हुआ है और यहाँ पर कालक नजारा दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा रात हो रही है बहौत बड़ी जगह में घूमने की ये --

येलो कलर की टी शर्ट पर ऐस.के लिखा हुआ है और यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ व्हाइट कलर के झोले भी दिख रहे --